और एक लड़की पैदल चलती हुई दिख रही है।

इस चित्र में सीढ़ियां दिख रही है।

एक झंडा दिख रहा है एक पेड़ दिख रहा है।

बहोत सारे कलर्स के डब्बे रखे हुए हैं।

इस चित्र में कागज से बनी हुई बोट्स दिख रही हैं।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

इस चित्र में एक रेड कलर का ट्रैक्टर दिख रहा है।

इस चित्र में बहोत सारी पन्नियों में--

इस चित्र में एक नदी दिख रही है।

और एक बड़ा सा रास्ता दिख रहा है।

इस चित्र में एक फैक्टरी दिख रही है।

दो तीन लोग काम कर रहे हैं।

इस चित्र में ऊपर प्लास्टिक के पाइपों का छज्जा बना हुआ हैं।

इस चित्र यह चित्र एक गार्डन का चित्र लग रहा है।

वहां पर एक वाइट कलर की और ग्रे कलर की कार दिख रही है।

इस चित्र में एक रास्ता दिखाई दे रहा है।

उस आदमी की शर्ट पिंक कलर की है।